पार्लर दिखाई दे रहा है पार्लर काफी बड़ा दिखाई दे रहा है पार्लर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड नीले कलर का दिखाई दे रहा है।

बस स्टैंड नज़र आ रहा है बस स्टैंड काफी बड़ा दिखाई दे रहा हैं बस स्टैंड में काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं सामने एक महिला नज़र आ रही है उसके साथ एक बच्ची दिखाई दे रही है।

महिला फोन पर बात करते हुए दिखाई दे रही है महिला के हाथ मे पर्स दिखाई दे रहा है यहाँ काफी प्रकार की मछलियाँ दिखाई दे रही है यहाँ कुछ मछलियाँ बड़ी दिखाई दे रही है यहाँ कुछ मछलियाँ छोटी नजर आ रही है।

दिखाई दे रहा है कैफे काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। यहां पर काफी सारी लड़कियाँ नज़र आ रही हैं यहां पे काफी सारी टेबल चेयर दिखाई दे रहे हैं। यहां पे काफी सारी लाइट नज़र आ रही --

घर के बाहर क्रॉस का साइन दिखाई दे रहा। घर में टीन शेड दिखाई दे रहा। यहाँ पे काफी सारे लोग खड़े हुए --